पिंजरे में चारो तरफ जालिया लगी है जो की हरे कलर की है ऊपर टीना लगा है।

एक हाॅल है जिस में बहुत सारे पोस्टर लगी हुई है कुछ लोग हैं जो की इधर से उधर घुम रहे हैं एक आदमी है जो कि सफेद शट पेहन हुआ है।

एक क्लास है जिस में कुछ लड़के है जो की पढ़ रहे है कुछ लड़कियां जो की पढ़ रही है उनकी अलग पंथी लगी--

एक पार्क है जिसमे बहुत सारे लोग है वो सभी कुछ मेट बिछा के कसरत कर रहे है इनमे से कोई लड़की है।